का मटेरियल पड़ा हुआ है जे_सी_बी रखी हैं |

टोपी लगा के जैकेट पहन के टाई लगा के एंड शूज पेहने हुए है ।

टेबल रखी है टेबल के ऊपर बोतल रखी हुई है ।

बच्चो के एंड बड़ो के कपड़े लटके हुए हैं |